शूट्स भी लगाए गए है यहाँ एक आदमी चेयर्स पे बैठा हुआ फोन चला रहा है यहाँ एक बड़ा सा डेस्क दिखाई दे रहा है।

यहाँ बड़ी बड़ी लाइटे भी लगाई गईं हैं येलो कलर की लाइट भी लगाईं गईं हैं पंखे भी लगे है और लोहे के रटे भी दिखाई दे रही है टी_वी का छत दिखाई दे रहा पीछे बहोत सारी समाने दिखाई दें रहीं हैं।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

यह बड़ी - बड़ी पिल्लरे दिखाई दे रही है फर्श पर मार्बल और टाइल्स दोनों बिछे हुए है यहाँ पर बहुत साडी कुर्सियां दिखाई दे रही है और ग्रील भी --